एक आदमी का जैकेट का कलर ब्लू है और शर्ट का कर का कलर पिंक है।

और यहां कुछ ट्यूब लाइट्स लगे हुए हैं जिसका रंग व्हाइट है।

यहां सामने एक पे टीएम का क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

अंदर कुछ पंखा लगा हुआ है जिसका रंग व्हाइट है।

ऊपर कुछ पंखे टंगे हुए हैं।

पंखे का रंग काला है ।

और यहां एक आदमी बाइक में खड़ा है।

और पीछे एक ट्रक खड़ा है जिसका रंग सफेद है।

और दुकान में शीशे लगाए हुए हैं।

यहां एक डस्टबिन रखा हुआ है जिसका रंग ब्लैक और वाइट में है।

सीढियां भी बनाई गई है और सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग लाल है।

एक लड़का खड़ा नीचे जा रहा है।

यहां लाइट लगे हुए हैं जिसका रंग सफेद है।

इस ग्राउंड में कुछ छोटे छोटे हरे हरे घास लगे हुए हैं जो की बहुत अच्छे दिख रहे हैं।

और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका रंग हरा भरा है।

यह एक गोडाउन के बाहर का दृश्य है।

यहां बहुत सारी किताबें स्टैंड में रखी हुई है ।

यहां बहुत सारी बसे है खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

यह एक राधा कृष्ण का मूर्ति है।

पीछे एक पेंटिंग है उसमें से एक पेड़ बना हुआ है ।